यह एक्सर्साइज़ रूम है इसमें समान भी है एक्सर्साइज़ करने के लिए।

और ग्राउंड में बहुत सारे कुछ लगे हुए हैं।

ये एक दुकान है जिसमें बहुत सारे समान है।

और आसमान भी दिखाई दे रहे है और घर का कलर व्हाइट है।

ये एक बॉक्स है जिसको लकड़ी और शीशे से बनाए हुए हैं।